यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर एक ईमेज दिखाई दे रही है। जिसपे एक छत पर दो लोग खुताई करते हुए दिखाई देर दे रहे है।

अहं हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो की एक पहाड़ी इलाके की है ये पहाड़ काफी ज्यादा हरी भरी है।

जो की एक बड़े से इमारत की है इस इमारत के नीचे काफी सारे छोटे बड़े और पेड़ दिखाई दे रहे है इमारत के नीचे कुछ गाड़ियो की पार्किंग भी दिखाई दे रही है।

यह हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक शॉप के अंदरकी है इस शॉप में बच्चों के खेलने वाली डॉल और काफी सारे अन्य खिलौने रखे हुए दिख रहे है।

जो एक बड़ी सी बिल्डिंग की है इस बिल्डिंग मे काफी सारी खिड़किया है ज़्यादातर खिड़की खुली हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने से बिजली का खंबा गया हुआ है जिसमे तार दिख रहा है।